खेल रहे हैं बगल में स्विमिंग पूल है चोरों ओर बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं रंग बिरंग फुल लगे हैं ।

एक आदमी दरवाजे पर खड़े हो कर के मोबाइल से बात कर रहे हैं।

और दोनों तरफ से रास्ता बनाया गया है एक अमरुद का पेड़ है जो दीवाल के ऊपर लटका हुआ है और रास्ता बहुत गंदा है।

यह एक स्टेट बेंक का मेन ब्रांच है।

माल --

किनारे में कुछ आदमी प्लास्टिक पकड़े खड़े हैं |

घेराव किया गया है यहाँ मैदान में जहाँ पर कुछ सब्जी --

ठेला लगा हुआ उस उसके पीछे बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं बगल में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है जो हरे रंग --